हम आ गए हैं हिन्दू धर्म की सेवा तो श्री कृष्णा की फोटो लगी हुई है एवं प्रेमीत्वा पायी यहा पे एक गलो में बहुत सारी फूल की मालाएं डाली हुई है इन्होंने वस्त्र पहनाया गया है उनके पीछे मोर का पंख लगा हुआ है।

यहां पे एक गंजी है एक टी-शर्ट हैं और यहां पे बहुत सारे बांस भी है।

ब्लैक ब्राउन कलर का है यहाँ पे एक मार्बल भी रखा है नीचे और वहा पे दिवार है वाइट कलर का है ये एक होटल का सीन है और यहाँ पे बिसलरी की बोतल रखी हुई है।

ने के लिए बहुत सारी जगह है वह भी और लाइट दिख रहा है ग्रीन कलर का डस्टबिन है यहाँ पे हर जगह बैठने वाली जगह पर जहां पर उसका स्टैंड है वहा पे लग-लगाया हुआ है और हर जगह स स ग्रीन लाइट ---